वर्कर्स काम कर रहे हैं यहां पे आयरन भी है काफी सारे बोहोत अच्छा नजारा है इसका आगे पहाड़ भी दिख रहा है। जो काफी अच्छा --

तथा दिखने में बहुत अच्छे दिख रहे हैं।

और बाइक भी खड़ी हुई है और यहाँ लाइट का भी खंभा है जो बिजली का तार भी है यहाँ पर रेलिंग भी लगी हुई है।

बिल्डिंग है ये मकान है जो कि काफी सुन्दर है और इसकी बनावट है सबसे अलग है और यहाँ एल_आई_सी बैंक भी है और इसके बाजू में गेट है बड़ा और रेलिंग लगी हुई है यहाँ पे काफी सारी --

यहाँ देखिये कितने सारे पेड है जो हरे भरे है कुछ पेड और यहां लम्बे लम्बी पेड भी दिख रहे है।